ये घर का सीढ़ी है और यहाँ पर लाल पेन से किया हुआ है और यहाँ पर ई ग्रिल भी लगा हुआ है और पीछे एक कूलर का आथी है।

है और वहाँ पर क अअअ रैक के साइड में और एक आदमी बैठा हुआ है और ऊपर पंखा लगा हुआ है।

और पीछे भी एक धोटी ऊटी का भी है व्यवस्था और रैक भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक आदमी जो कि दुकान का सेलिंग कर रहा है।

पीला तीसद पहना हुआ है और आधार का पीछे चित्र लिखा हुआ है और पंखा चल रहा --

और यहां दीवार है जो कि यहां पर लिखा हुआ है सरयुग सिंह बालदेव सिंह।

और यह पीला कलर का एक बस है और इधर वाइट कलर का बस है और इधर र राइट ररल रेड कलर का बस है जोकि सात आठ ठो बस है।

घर है और पीछे भी घर है यहां पर दस गो घर हैं और आसमान भी नजर पर रहा है और एक ट्रांसफार्मर भी है।

और बहुत सारा जो आथी इय क्या कहते हैं उसको पेर भी लगा हुआ है और सड़क भी है और उस पर साइड से वाइट कलर का चि --

यह भी बस इस्टेन है और यहाँ पर पीला कलर का बस है जोकि यहाँ पर बहुत सारा आथी है बस है और यहाँ पर फूलऊल भी है और पीछे --

झरला टाइप का लगा हुआ है और पीछे एक दीवार है और पीछे बस है जोकि पांच ठो बस --

यहाँ पर टमाटर भी है और बैगन उंगन भी है और यहाँ पर आलू भी है और बगल में भी है।

क्या कहते हैं उसको दुकान में साड़ी बिका रहा है और धोती ओती का भी सामान--

और यह रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ बॉल्ब बर रहा है और यहाँ पर झालर टाइप का लगा हुआ है और एक आदमी सुता हुआ है।

और यह छत है जोकि यहाँ पर ब छत ढलाने वाला है और मिस्त्री सब नीचे आके यहाँ काम उम कर रहा है ऊपर में और बहुत लंबा चौड़ा --

यह एक शुभ लक्ष्मी एस एस का यहाँ पर दुकान है और यहाँ पर जोकि पेंतुंट बिकाता है।

यह एक पुल है और पुल के नीचे पानी है और पानी उ पुल पर एक बाइक आ रहा है बाइक पर आदमी बैठा हुआ है एक और उस कु --